यह एक मस्जिद है जिसमें की एक आदमी नमाज़ पड़ रहा है टोपी लगाए बैठा है और सफेद कलर का फर्श बिछा हुआ--

बड़ा सा शादी हॉल है जिसमें की बहुत तरीके की कुर्सियां है कुछ सफेद है कुछ पीली है कुछ कुछ गोल्डन है।